दिख रहा है ईट वगैरा दिख रहा है कलर दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं लकड़ी का एक खम्बा दिख रहा है पीला कलर का पेंट --

कैंची रखी दिख रही बोटल रखी हुई दिख रही है टॉवल और रखा है उसने सिर पे।

लगी हुई दिखरा कांचों में फूल बने हुए दिख रहे हैं कलर दिखणा बहुत सारे।

ग्रीन कलर दिख रहा है बल्फ लगे हुए दिख रहे है बहुत सारे कलर दिख रहे है दीवारों पे भी कलर दिख रहे है ग्रीन पिंक आसमानी कलर --

मकान दिख रहा है इसमें ऑरेंज कलर की चेयर रखी दिख रही है बहोत सारे पेन पेन्सिल वगैरा दिख रही है कॉपी रखी दिख रही है एक रूम है।